जिसके दरवाजे के ऊपर छह मूर्तियां बनी हुई हैं इसके सबसे ऊपर एक क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है।

किसी शादी का स्टेज है जिस पर फूलों की बहुत ही सुंदर सजावट की गई है स्टेज के नीचे फव्वारा बना हुआ है और किनारों पर भी फूलों से सजावट की गई है।

उदय यह सूर्यअस्त का समय है सूर्य अपनी लालिमा बिखरे हुए हैं।

दुकान है जिसमे पेंट्स प्राइमर के साथ बेसिन सिंक फ्लश टैंक भी बेचा जा रहा है। इसमे कुछ लेबर्स लगे हुए है।

मॉल में फल सब्जियाँ मिल रही हैं जिसमे केला सेब संतरा पपीता अनानास और बड़े निम्बू हैं।

इस पर एन्जॉय मूवी भी लिखी हुई है । नो फियर आर्म्स भी लिखा हुआ है ।

एक बड़ी सी ट्रौली में स्लीपर्स रखी हुई हैं। रैको पर जूते रखे हुए हैं। स्पोर्ट शूज और फॉर्मल शूज जैसे हैं।

सिनेमा हॉल के बाहर के दीवार का दृश्य है जो बोहोत ही सुन्दर है इसे विभिन्न रंगों से बोहोत अच्छी तरह से सजाया गया है यह देखने में बोहोत ही भव्य लग रहा है।

इसके उपर एक बोर्ड रखा है जिस पर लिखा है अभू कलेक्सन --